खेलने के और बहोत सारे लोग एंजॉयमेंट कर रहे है नहा रहे हैं और बड़ी सी टावर भी दिखाई दे रही है बाहर पे --

इस चित्र के अंदर एक कपड़े का दुकान है जिसमें एक पुतला में एक लड़की को फ्रॉक पहनाए गए हैं और पीछे में घड़ी लगा के--

कांच के स्टैंड में रखे गए हैं लाइन से पूरे कपड़े को जमा कर स्कैनर दिखाई दे रहा है नीचे वाइट कलर की ला टाइल्स लगी है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हाल हॉल है जिसमें बहोत सारी चेयर लगे हुए हैं।

और पेट्रोल पंप के ऑफिस के ऊपर एक बड़े जाने पेड़ हरे--

और बाहर में बहुत सारी बाइक एक्टिवा है।

वॉटरफॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है बड़े बड़े चट्टान हैं।

पुरी क्रीम कलर की नदी है।

कुछ टेबल चेयर लगे हुए हैं।

जिसमें एक बड़ी सी रोड दी गई है।

और बहुत सारे लाईन से कपड़े की दुकान भी है अलग अलग कंपनी की और नीचे पूरी व्हाईट कलर की टाइल्स लगी हुई --

खाना के इमेजस पोस्टर चिपके हुए हैं गेट के पास।

ए_टी_एम के बगल में पतली सी गली दिखाई दे रही है गली के किनारे घर भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक हॉस्पिटल हैं।

कबार में बोहोत भीड़ दिखाई दे रही है।

इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक झरना--